यहाँ एक मंदिर है छोटा सा।

मंदिर भी दिखाई दे रहा है। बहोत लोग भी आ रहे --

तीन चार सफ़ेद कलर के कार दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लैक कलर के भी है ।

ये सफ़ेद कलर का बड़ा सा बस है।

यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लड़के दौरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और दो तीन लोग खड़े दिखाई दे रहे --

एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है और दो-तीन लड़के हैं ।